ये एक मीटिंग रूम की तस्वीर है कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए है।

टेबल पर फाइल्स नोटबुक और पानी का बोटल रखा है।

यहां तस्वीर में एक छोटा बच्चा दिख रहा है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है।

बच्चे ने येलो शर्ट और ग्रे पैंट पहना हुआ है और लाल जूते।

यह तस्वीर एक क्लास रूम या स्कूल एक्टिविटी की है स्टूडेंट डेस्क पर बैठे हुए और क्राफ्ट वर्क कर रहे है।

पीछे बैनर भी लगाया गया है लोग शांति से बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं।

यह एक बड़ी जगह है जिसमें ऊंची सीलिंग और बड़ी बड़ी मशीन लगा हुआ है।

यहां तस्वीर में भारत की एक कंस्ट्रक्शन साइट्स को दिखाया गया है।

वो कंक्रीट डालने उसे लेवल करने और जैसे स्ट्रक्चरल ताईयार कर रहा है।

सामने लाल कारपेट पीछे है और दो महिला रंग बिरंगी साड़ी पहने खड़े है।

वहां लोग सब सफेद कपड़ो में है।

ऊपर एक पंखा भी देख सकते हैं।

वो एक बहुत सुंदर सा पोज मार रहा है अभी।

उसके साइड में ही हम एक साइकिल देख सकते हैं।

मंच की ओर रंग बिरंगी फूलों और कपड़ों से सजाया गया है।

पीछे लाल पीले गुलाबी और बैंगनी रंग की सजाव बहुत आकर्षिक लग रही है।

फर्श पर सुंदर डिजाइन वाले कालीन बिछा हुआ है।

लंबी कान नीचे लटक रहे है।

यहां पर एक व्यक्ति ऊसकी जांच कर रहा है और बाकी सब अपने काम पर व्यस्त है।

दो रंग बिरंगी कैबिन्स और रोशनियों से सजाए गए हैं।

यहां दृश्य एक रेस्टोरेंट का है जिसे अच्छी तरह सजावट किया गया है।

पर सीलिंग में कप से डेकोरेट किया गया है।

यहां पर हम रंग बिरंगी लाइटों की सजावट देख सकते है।

यह तस्वीर एक योगा क्लास की दिखाई गई है।

लोग सड़क पर चल रहे है कुछ तो खड़े हो के बात कर रहे है।

कुछ लोग फोटो या वीडियो ले रहे है।

जहां ज्यादातर महिला एक साथ डांस कर रहे हैं या एक्सरसाइज ।

सभी लोग अलग-अलग कपरो मे है।

ये एक नाई की दुकान है जो हरे सफेद और नारंगी गुब्बारों से सजाया गया है।

अंदर कुर्सियां और आईना लगा है जहां लोग बाल कठवा डहे है।

कुछ लोग काम मे है और कुछ इंतजार कर रहे है।

सजावट से लगता है कि ये उद्घाटन या विशेष अवसर पर की गई है।

यहां पर हरी चद्दर टेबल पर बिछाया गया है।

नीचे एक छोटा सा तालाब जीस जैसा बना है।

दोनों लड़के बिना शर्ट के पानी मे खड़े है और मजा ले रहे है।

यहां तस्वीर एक ब्रिज के किनारे की ली गई है जहां पर हम चार लोगों को देख सकते है।

वहां इधर उधर टहेल रहे हैं।

यह तस्वीर में ब्रिज के नीचे एक नदी बह रही है।

ये तस्वीर एस_एम_डी कॉलेज हाजीपुर की है यहां एक बड़ा पीला रंग का बिल्डिंग दिख रहा है जिसमें कॉलेज का बोर्ड लगा है।

यहां एक चर्च के बाहर कुछ पास्टर लोग खड़े है जो प्रार्थना कर रहे है।

इस तस्वीर में हम दो बच्चे देख सकते है जो खेल रहे है।

और दूसरा लड़का नीली शर्ट में है।

औरते और बच्चे पूजा और दर्शन के लिए आए है रात भर देवता की मूर्ति रखी है जो फूल और सजावट से आलंकृत है।

यहां एक बुद्धिस्ट स्तूप का मॉडल है। इसमें एक बैठा हुआ बुद्ध की मूर्ति बना है जो ध्यान और शांति का प्रतीक है।

इसका उपयोग बुद्ध धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए होता है।

यह तस्वीर एक चर्च की है जिसमें एक प्रोग्राम को मनाया जा रहा है।

फोटो बूथ पर अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

वह कुछ और लोग भी मजबूत है।

तस्वीर एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप की है।

दो मैकेनिक नीली यूनिफॉर्म में गाड़ी के पास खड़े है।

जैसे काम शुरू करने या उस पर चर्चा कर रही हो।

यहाँ एक मंच है जिसमें एक होस्ट भी है।

ये इमेज एक खुला मैदान का है जहां कुछ लोग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग के शुरू होने वाले काम में लगी हुई है।

कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ मोबाइल देख रहे है और कुछ चुपचाप बैठे है।

दो बड़े बैनर्स लगे हैं जिसमें से एक पर फ्री रुलर हेल्थ कैंप लिखा है।

इस चित्र में एक स्वास्थ्य कैंप दिख रहा है।

एक महिला अपनी जांच के लिए खड़ी है।

ये एक चर्च का दृश्य है जहां पर हम एक परिवार चर्च के फादर और नन के साथ फोटो खिंचवा रहे है।

न्होंने एक सफेद कपड़ा पहना हुआ है।

इस चित्र में एक मंदिर का दृश्य दिखाई देता है जहां मुख्यतः तीन मूर्तियां स्थापित है और--

बीच में विराजमान मूर्ति को भक्ति के साथ सजाया गया है।

यहां वैक्स की मूर्तियां भी है जो प्रमांकित का धूप में संगीतकारों को दिखाता है।

ये फोटो एक शादी का दृश्य है।

दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े है।

दोनों परिवार की लोग शादी की रस्म कर रहे है।

पीछे रंग बिरंगी सजावट और फूल लगे हैं।

यहां पर हम विभिन्न दवाई को देख सकते हैं।

यह तसवीर किसी भी फार्मेसी का लगता है।

ये दृश्य किसी लेनदेन या सहायता की भावना को दिखाता है।

यहां एक डिस्को चल रहा है जहां सब लोग म्यूजिक पर डांस कर रहे हे।

रोशनियां रंग बिरंगी चमक रही है।

सभी जवान लोग अपने दोस्त के साथ मजे कर रहे है।

हंसते गाते और इंजॉय करते हुए दिखाई देते है।

ग्राउंड पर तीन व्यक्ति दिखाई देता है।

नीचे खेतों और छोटे घर नजर आ रहा है ऊपर खुला आसमान है जो दृश्य को शांत बनाता है।

और ऐसा लगता है कि को अपने विचारों पर खो गया है।

यहां बच्चे ऑरेंज ड्रेस में ग्रुप डांस कर रहे है।

स्टेज पर बड़ी लाइट और स्पीकर लगा हुआ है जो प्रोग्राम और अच्छा बनाता है।